दिवार के पीछे एक औरत का सर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर काफी सारा समान रखा हुआ है। कुछ छोटे-छोटे पौधे लगे हुए दिखाई दे रहे है जो काफी सुंदर लग रहे है। ये जगह थोड़ा व्हाइट कलर की है इसका फर्श ग्रे कलर का।

एक इ रिक्शा है। जिसकी बैक साइड दिखाई दे रही है। यहाँ पर काफी सारा कूड़ा पड़ा हुआ है। काफी सारे मिट्टी पड़ी हुई दिखाई दे रही है। रिक्शे के पीछे येलो कलर की येलो का पर्दा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक व्हाइट कलर की बिल्डिंग दिखाई दे रही है। जिसकी दिवारे --

यहा पे बोहोत सारे लोग बेठे हुए दिखाई दे रहे है। ये जो हॉस्पिटल ये एक हॉस्पिटल है जहां पर कुछ लोग बेठे हुए हैं।

एक गेट दिखाई दे रहा है जो की लकडी का है। जिसमे स्टील का अ स्टैन्ड लगा हुआ है।

एक घर है जिसके गैलरी में स्टील की ग्रिल लगी हुई है जो काफी सुंदर लग रही है। यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है जो ब्लू जिस पे ब्लू कलर से कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे काफी सारी टाइल्स लगी हुई है। ये --

यहाँ पर कुछ न्यू ऑटो खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं जो काफी सुंदर लग रहे हैं। इनके कलर काफी अच्छे लग रहे हैं। ये इनकी आ इनकी छत में कुछ लाइट लगी हुई दिखाई दे रही हैं। ये जगह काफी बड़ी है। यहाँ पर --